यहां मैं एक रेलवे स्टेशन देख पा रही हूं।

यहां मैं एक स्टैचू देख पा रही हूं जिसे कि बीच में लगाया गया है।

यहां पे कुछ सीढ़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

यहां मैं एक रोड देख पा रही हूं।

जहां पे सामने मुझे एक कॉरिडोर दिखाई दे रहा है।

यहां पे मैं एक चार पहिया वाहन और बहुत सारे दो पहिया वाहनों को देख पा रही हूं।

ऊपर मुझे एक सी_सी_टी_वी कैमरा लगा दिखाइ दे रहा है।